सामने गेट लगा हुआ है और एक्टिवा सामने खड़ा हुआ है।

ऐसा लग रहा है कि एक गार्डन है जिसमें दो नारियल के पेड़ है।

और सुंदर सुंदर यहां बच्चों खेल भी सकते हैं।

केले के पेड़ लोग भी हैं।

ऐसा लग रहा है देख के की ये आइसक्रीम पार्लर है।

बहोत सारी कुर्सियां है बहोत सारे लोग बैठे हैं।

जिसमें बहोत सारे भगवान की मूर्तियां है।

सब कोई सेल्फी भी ले रहे हैं यहां--

यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि एक आइसक्रीम पार्लर है दो फ्रीजे है।

पंखे भी है सुंदर सुंदर पॉट भी लगे हुए हैं।

बहोत सुंदर सी जगह है पेड़ पौधे हरे भरे।

यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि यह शॉप साड़ी दुकान ही है।

यह दृश्य ऐसा दिख रहा है कि हम बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

यह एक जिम है इसमें लोग जिम करने आए हैं।

एक आदमी बैठा है एक खड़ा है एक बच्ची है जो खेल रही है।

और बिस्किट यह सारी चीजे इसमें मिलती है।

पौधे को एक लेडिस बहोत सुंदर तरीके से देख रही है।

और एक बिल्डिंग भी हैं सामने में।

ये पिक को देख के ऐसा लगता है ये पहाड़ी इलाका है।

जिसमें दो पानी टंकियां हैं सामने--

बहुत सारी बिल्डिंगयां दिख रही हैं।

और सामने हरे भरे पेड़ पौधे भी है।

जिसमें आमने सामने पेड़ पौधे भी हैं।

इस पिक को देख के ऐसा लग रहा है की यहां एक शादी होने वाला है।